बहुत सारा यहा पे घर बना हुआ है तीन मंजिला और लाइन का वायर गया हुआ है ऊपर से तार गया हुआ है।

ये एक बड़ी गार्डन की तस्वीर है जिसमे की बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए है। चारों साइड यहाँ इमारत है घर है और आसमान उजला कलर का है।

इस तस्वीर मे बडीसी फील्ड दिखाई दे रही है फील्ड के चारो ब साइडसे तन दीवारघेरा हुआ है दीवारपे दो बच्चे बैठे हुए है।

इस तस्वीर मे एक तीन घर दिखाई दे रहा है जो की येल्लो कलर का है कॉटेज है झोपड़ी का घर हैं जो की--

इस तस्वीर मे कोई समारोह का तस्वीर हैं जिसमे की बहुत सारे कुर्सियां लगी हुई हैं और कुर्सियों पे पर्दे लगे हुए हैं रेड कलर के और व्हाइट कलर के कोई रेड कलर का कुर्सी मे लगा हुआ हैं कोई व्हाइट कलर की कुर्सी मे लगे हूए हैं।

आज एक दो घर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है आसमान व्हाइट कलर का है और एक लड़का बैठा हुआ और दो लड़के तीन लड़के खड़े है और खेल रहे है।